बहोत सारी कुर्सियां है बगल में औरते बैठी हुई है जो पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई है ऊपर में पंखे चल रहे है।

फूलों से सजाया हुआ है ऊपर से एल.ई.डी बल्ब लगे हुए हैं।

दिखाई दे रहे है यहाँ बाइक्स भी बहुत सारी दिखाई दे रही है यहाँ पे सामने खंभा दिख रहा--

यहाँ पे सारी झाड़ियाँ नजर आ रही है एक एक लाइन से लगायी हुई है बगल में बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे अंदर में कुछ लोग बैठ हुए हैं।